अ मूर्ति रखी हुई दिख रही हैं एक पत्थर की टाइल्स दिख रही हैं।

शिवम् मैरिज हॉल दिख रहा हैं लाइटिंग्स लगी हुई दिख रही हैं।

एक रेड कलर की जाली दिख रही हैं अ अंगूर के हरे कलर के डंठल दिख रहा हैं।

कुछ हरे कलर के पौधे दिख रहे हैं।

पत्तियां दिख रही हैं पीले कलर की टहनी दिख रही हैं।

सफ़ेद कलर का एक टेबल दिख रहा हैं।